यहाँ पर बहुत सारी बेंचेस भी लगाई गयी है। यह प्रकृति में बैठने का अच्छा स्थल है।

अ सुधर रही है। इस कार का कलर ग्रे है। यह कार का पहिया निकाल दिया गया है और बोनट खोल दिया गया है।